यहाँ पर लोहै के बने हुए गेट दिखाई दे--

यहाँ पर चार बॉय दिखाई दे रहे है। जो बैडमिंटन खेल रहे है। जो कि यह टेन सीट के अंदर है और यहाँ पर एक वॉच दिखाई दे रही है।